मुझे एक शॉप दिख रही है शॉप में एक बैग भी दिख रा--

और मुझे बहोत सारी गाड़ियां भी दिख रही है और बहोत सारी लाइट भी दिख रही--

और है ना उसमें समोसे कचोरी पोहा भी दिखाई दे रहा है।